यह तस्वीर में एक सलून दिख रहा है| इसमें सामने आईने लगे हुए हैं ऊपर इसमें हरे रंग की पूरी बेल गई हुई है साइड में इसके पीले रंग का प्लास्टिक का बकेट दिख रहा है।

यह तस्वीर एक भवन की दिख रही है| इसमें नीचे कुछ महिलाएं खड़ी हुई है जो सफेद रंग की पोशाक पहनी हुई है| ऊपर इसमें आसमान नजर आ रहा है साइड में इसमें कुछ व्यक्ति खड़े हुए दिख रहे हैं।

उसके सामने इसमें तीन कांच के गेट लगे हुए हैं।